ये दो तीन मंजिल का घर है इन मंजिलो पे बैंक बना हुआ है |

बोरियां थैलियां रखी हुई है और बहुत सारे --

ये एक बहुत बड़ी नदी है | इस नदी के चारो तरफ दूर दूर तक --

और यह चारों तरफ घास --

और बहुत हीं सारे मछलियां यहाँ रखी गई हैं।

अं बाउंड्री लगा हुआ है और बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।